आप देख पा रहे हैं ये एक हॉस्पिटल की फोटो है जहां एक नर्स बैठी है जो कुछ लिख रही है।

आप देख पा रहे हैं यहां पे एक स्टूल है स्टूल के ऊपर तीन चाय के गिलास रखे हैं जो एक--

फोटो खिंचवा रहा है कोई नहीं है लाइटिंग वाईटिंग है यहां पे बैकग्राउंड है तो चेयर के पीछे गोल्डन कलर का बैकग्राउंड लगा है।

आप देख पा रहें हैं ये एक रेलवे स्टेशन हैं जहाँ बहोत से सब वे यात्री अपनी--

आप देख पा रहे हैं काफी अच्छी बिल्डिंग दिख रही है जहां पे--

जहां पे कुछ बिल्डिंगे हैं और एक बैठने का स्थान है।

आप देख पा रहे हैं यहां पे काफी चेयर रखी है।

उसके ऊपर चेयर है जो ब्लू कलर की काफी चेयरे रखी हैं कुछ आदमी खड़े हुए हैं।

आद्य सामग्री मिलती है खाने की चावल दाल और कुछ नाम सा लिखा हुआ है जो समझा में नहीं आ रहा।

कई सी चीजे दिख रही है जहां एक कॉफी मशीन रखी हुई है उसके बाजू में--

दुकान में लगी हुई है जहां से एक आदमी अंदर इंटर करने को सोच रहा है।

फूड ओनली लव काफी सुंदर पिक बनाई हुई है पेड़ों की उसके बाजू में थाली के पिक है जिसपे चम्मच--

आप देख पा रहे हैं ये एक मज्जिद की पिक है जहां पे कई लोग--

का नाम लिखा हुआ है जिसपे गेट हैं लोहे के--

और कुछ लोग खड़े हैं नीली कलर की जर्सी पहेन के और एक औरत है।

फ्रंट में ब्लू कलर की घड़ी है उसके सेकंड --